और इसमें एक एल_सी_डी भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में बहोत से बच्चे नीचे बैठे हुए हैं।

और कुछ आदमी खड़े हुए हैं और इनके पास में एक ट्राली भी है।

उसके पास में एक गत्ता भी पड़ा हुआ है।

और इसकी छत में कुछ लाइटे भी लगी हुई है।

यह एक बहुत ही अच्छा घर है जिसके अंदर कुछ खिड़कियां लगी हुई है।

और एक टेबल भी रखी हुई है जिस पर बहुत सा सामान रखा हुआ है।

यह एक पैलेस है जिसके अंदर बहोत सी सजावट की गई है।

यह एक दुकान है जिसके अंदर कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं।

इसके अंदर बहुत सी टेबल और कुर्सियां रखी हुई है।

और इस रूम के अंदर कुछ सोफे रखे हुए हैं।

और इसके दीवार में बिजली के बोर्ड भी लगे हुए हैं।

और इनके सामने ही एक एलडी रखी हुई है।

और इस दुकान में कुछ कांच के बॉक्स भी रखे हुए हैं।

और इसके अंदर पेड़ भी लगे हुए हैं।